दोस्तों यह जो तस्वीर में आप देख पा रहे होगे यह एक तमिलनाडु का है शायद फोटो --

दोस्तो ये भी कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम चल रहा है तमिलनाडु में। यहाँ पे कुछ बच्चो ने सांस्कृतिक प्रोग्राम मे भाग लिया था।

इसे इस साइड को नहीं चलना चाहिए इसे अपनी हाथ की साइड को चलना चहिए और बढ़िया है।

दोस्तों ये जो आप तस्वीर में देख रहे हो शायद ये कोई न्यायालय है और यहाँ पर कोई मुस्लिम महिला एक क् बच्चे को ले जा रही है और यहाँ पे एक --

दोस्तों यहाँ पर ये जनता डेरी का तस्वीर है। यहाँ पर लोग डेरी पे इतना भीड़ लगा कर खड़े हो गए है।

दोस्तों ये जो आप फोटो देख रहे होगे ये एक किसी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान का फोटो है यहाँ पे दुकान पे कुछ बाइके खड़ी हैं।

समान रखा हुआ हैं यहाँ पे काम चल रहा हैं घर बनाने का और घर का नजारा भी काफी मस्त बनेगा जब बन जाएगा तो यहाँ पे काफी अच्छा बैकग्राउंड हैं।

दोस्तों यहाँ पर एक ये कोई ईस्कूल यहां कॉलेज है। मेमोरियल स्कूल है कोई जो की काफी अच्छा है जिसका गेट ये कोई --

क्रिश्चन धर्म के लोगों के लिए बनाया गया स्कूल है। इसमें क्रिश्चियन धर्म के लोग पढ़ने आते हैं। ये काफी अच्छा है।

प्रतियोगिता परीक्षाओ की पुस्तके हैं। यहां पर आपको उचित रेटों में मिलेगी। कक्षा एक से बारह की पुस्तके आपको सभी मिलेंगी कंप्युटर क्लासेस की सब पुस्तके।